और चैनल गेट के अंदर ही एक लड़का जाता हुआ नजर आ रहा है चैनल गेट के ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है ब्लैक कलर का।